दीवाल पर बहोत सुंदर डिजाइन है।

दीवाल पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी हुई है।

कपड़े बांधकर से पूजा की गई है।

पीछे और गाड़ी लगी हुई है।

दीवारों पर कुछ बैनर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।

यहां पे हम एक सेनिटाइजर रखा हुआ भी देख सकते है।

बिजली का तार जा आता हुआ दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है उसके सामने एक बड़ा सा पीले रंग का बस लगा गया--

यहां पर बड़ा सा मशीन दिख रहा है।

एक युवक बीच में खड़ा नजर आ रहा है।

काफी सारे बोतल और पैकेट के सामान रखे गए हैं।

बहोत सारे वृक्ष हम देख सकते हैं।

जमीन पर घास उगी हुई है।

यहां पे काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर हम नदी देख सकते हैं।

दीवालो पे कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं।

इस पे घास उगी हुई है।

यहां पर हम बड़े बड़े बेनर्ज़ लगे हुए देख सकते हैं।

बड़े अक्षरों में प्रभु निवास लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे शीशों का प्रयोग किया गया है।

यह एक भोजनालय का दृश्य है।